इंसान जमीन पर खड़ा है। वहाँ हरी घास लगी है।

ये एक बड़ा मैदान जैसा दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ एक चार तीन से चार मंजिला बिल्डिंग दिखी दे रही है।

इसपर कुछ लिखा हुआ है। सामने की तरफ काफी सारी घास लगी हुई है। कई सारे पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

रास्ते में पेड़ की परछाई भी दिखाई दे रही और पीछे आसमान भी दिखाई दे रहा है।

दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये एक बड़ा बहोत बड़ा घर जैसा दिखाई दे रहा है। घर के सामने एक बोर्ड लगा हुवा है। जिस पर कुछ --

लाइटे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। हर एक फ्लोर पर आपको रेलिंग लगी दिखाई दे रही है।

का साइन बना हुआ है। सामने की तरफ एक दान पेटी भी बनी हुई है।

पंखे लगे हुवे हैं। साइड में कई सारी जिम की मशीनें रखी हुवी दिखाई दे रही हैं।

एक अ दिवार बनी हुई है। दिवार के बीचो बीच अ गेट बना हुआ है। जोकि आधा खुला हुआ है।

ज्वेलरी रखे हुए है कानों के दिखाई दे रहे है।

ऊपर की तरफ एक छोटी सी शो पीस में साइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है और दो हाथी भी रखे हुए हैं।

अगल बगल बोहोत सारे घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक दुकान जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें दो से तीन अंकल लोग दिखाई दे रहे हैं। सामने एक अंकल --

खड़े होकर अ फोटो निकलवा रहे हैं। तीनों लोग आपस में एक-दूसरे के हाथ पकडे हुए हैं।

ये एक खुला मैदान जैसा दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ एक इमारत जैसी दिखाई दे रही है।

अ घास लगी हुई दिखाई दे रही है। पीछे एक --

गड्ढा भी बना हुआ है छोटा सा।

नदी के किनारे पर कई सारे लोग आरती करते हुए एवं --